ये एक मुर्गी का फार्म दिख रहा है।

मुर्गी को खाने के लिए दाना भी दिया हुआ है।

के लिए साइड में एक बार बना हुआ है ये बहुत बड़ा रूम है।

कैफे ग्रील या रेलिंग से कवर है।

यह बहुत सारे मछली है ये मछली बहोत छोटे छोटे है।

यहां बहुत सारे औरतें खड़े खड़ी हुई है वो मास्क पहनी हुई है।

यहां बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

घर के ऊपर क्रिश्चियन का सिंबल दिखाई दे रहा है।

ये एक नर्सरी जैसा दिख रहा है ये एक घर भी है।

टेबल में थम्स अप का बोटल दिखाई दे रहा है।

यहां एक बिसलेरी बॉटल भी दिखाई मिल रहा है।

हर टेबल पे सॉस वगेरा रखे हुए हैं।

ये एक दुकान है यहां लड़कियों का पर्स मिलता है।

यहां बहुत सारे पर्स लटकाए हुए दिखाई दे रहा है।

यहां एक आदमी हाथ धो रहा है।

ये एक दुकान है यहां एक चेयर एवं एक बैंच रखा हुआ है।

बच्चे बूढ़े सब फोटो खींच रहे हैं।

यहां पिंक कलर वाइट कलर ब्लैक कलर का टी शर्ट दिखाई मिल रहा है।

इसमें रियल टाइम प्रो फिफ्टी हंड्रेड एंड रियल टाइम प्रो नाइन हंड्रेड दिखाई दे रहा है।

यहां ऊपर वाल में पत्ते से सजावट किए गए हैं।

ऑरेंज कलर के परदे लगे हुए हैं।

यहां लड़कियों के कपड़े पाया जाता है।

यहां स्प्रेज वगैरा रखा हुआ है।

रात को खींचते हुए दिखाई दे रहा है।

पीछे बहोत सारे स्कूटी बाइक रखे हुए हैं।